पिकनिक मनाना माइंड फ्रेश करने के लिए एक बोहत ही कारगर कार्य साबित होता है ।

जहाँ पर लोग बाग़ अपनी पुरानी कला कृतियों को देखने के लिए भ्रमण में जाते है |

गिरजाघर ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म स धर्म स्थलों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर इसाई धर्म के लोग अपने गाॅड से प्रेयर करने के लूप में रूप में इस स्थान का उपयोग करते --